और बादल भी अच्छे लग रहे हैं दिखने में ।

पुरुष भी आए है और नीचे में चटाई बिछाकर सभी योग कर रहे हैं जोकि काफी अच्छी लग रही है देखने में।

यह एक रेस्टोरेंट है और यह रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबल कुर्सियां लगाई गई है।

और इसमें लाइटे भी लगाई गई है।

रेलवे फाटक का नाम है मधुपुर बी_अच ।

ओ बहुत सारे सामान दिखाइ दे रहे हैं और दुकानदार भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर जे_सी_बी लगी हुई है यहां पर कोई काम की जा रही है यहां पर बहुत दो तीन वर्कर काम कर रहे हैं।

यह मॉल में बहुत अच्छी लाईटिंग भी लगाई गई है और बहुत अच्छे कपड़े भी रखे हुए हैं। जोकि काफी अच्छी लग रही है। दिखने में और काफी सुंदर भी--

यहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि फलों से काफी अच्छी तरीके से सजाए गए हैं।

बढ़िया व्यक्ति सफेद कलर की टी_शर्ट और--

वरमाला होने की कार्यक्रम की को रखी है।

काफी अच्छा लग रहा है यह देखने में।

बगल में दो खिड़कियां दिखाई दे रही है।

पुल लाइट तारे भी दिखाई दे रही है।

और यहां पे पंडाल बनाया गया है जो कि काफी अच्छी पंडाल बनी है।

और अच्छी कार्यक्रम होने के लिए अच्छी पंडाल की व्यवस्था की गई है।

पंडाल को बहुत अच्छी से सजाया गया है।

बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं।

ये गुरुद्वारा को सफेद और नीला कलर से पेंट किया गया है।

यहां पर चाय पानी उपलब्ध हैं।

और बहुत सारे फ्रूट्स फल रखे हुए हैं।

जैसे कि अंगूर सेब संतरा केला व अनानास जैसे बहुत सारे अनेक प्रकार के फल रखे हुए हैं।

यह एक होटल है जो की काफी अच्छी दिख रही है।

और यह होटल को सफेद कलर से रंग किया गया है और नीचे में टाइल्स लगाया गया है जो कि काफी अच्छी लग रही है।

और ऊपर ओभर ब्रिज बनी हुई है।

यहाँ कोई चीज का प्रोग्राम रखा गया है।

और बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और यह दुकान में बहुत सारे और भी सामान रखे हुए --